इ जिम करे वाला ह। एमे जिम होला और सब लोहे का बाटे। नीचे टाइल्स लगलबा।

एगो आदमी बान खड़ा बान वर्दी पहन के और लाल कलर के पाया बा नीला कलर का रंगल बा ऊपर छत छबाइल बा।

चढ़े के कोसिस करता है एगो मोटरसाइकिल बा वो एगो आदमी बैठल बा आलस एगो पेड़ बा बहुत सुन्दर प्री --

चन्द्रमाँ मामा बनावल बाने लाईट लागल बाटे खूब वोमे लागता और मैक बा इ मिया लोग क --

टेंकर ह। टेंकर में तेल आइल बा और और एगो बल्टी बा और धरती में टेंकर से पाइप से जाता तेल। एगो मर्दाना बा बइठल बा।